क्रेज़ी चिकन वेज एंड नॉन वेज लिखा--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

और वहां एक लड़का खड़ा है।

और एक झूले पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो की मूस--

यहां पर एक पंडाल जैसा कुछ सजाया गया है।